अ जैसा कि हम देख रहे है काफी आ रोड जा रहा है काफी दूर तक जा रहा है। साइड में घर भी है ग्रीन कलर का और पेड़ भी लगा हुआ है और वायर भी जा रही है बिजली की तारे जा रही है। सामने पिंक कलर का घर है कुछ गाडियाँ साइड मे खड़ी हुई है।

गार्डेन काफी बड़ा है पांच पार्ट मे है। अ चार चरो चारो साइड मे एक पार्ट है बीच मे एक सेंटर ऑफ़ पार्ट है और साइड मे सोलर पैनल भी लगा हुआ है जिससे की बिजलियाँ हमारे पास आती है सूर्य के द्व द्वारा --

जैसा कि हम देख रहे है ये काफी बड़ा मैदान है जहा पर लोग खेल रहे है और कुछ आदमी बैठे है जो कि चीयर अप कर रहे है टीम को ओर एक लड़का है जो बीच मे बैठा हुआ है पब्लिक के वह एक अंकल को देखके हस रहा है।

आ जैसा कि हम देख रहे है सामने एक काफी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जोकि ग्रे कलर की है और बिल्डिंग के बाहर ही कुछ बाइके खड़ी हुई है एक साइकल खड़ी हुई है। छोटा सा गार्डेन भी है जहाँ पर आ कंस्ट्रक्शन चल रहा है।

अ जैसे की हम देख रहे है यह काफी बड़ा अम्म काफी बड़ा घर है | पुराना घर लग रहा है जैसे की राजा महाराजा के टाइम का घर हो| इनकी दीवारें देखो काफी बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी दीवारें है जो कि आसानी से नहीं टूटती |